सामने में एक बड़ा-सा घर दिख रहा --

जो व्हाइट कलर मे है और ब्राउन कलर मे है।

बिल्डिंग का कलर जो है वो रेड कलर का बिल्डिंग है।

और दीवालों पर पीला है और उस पे दीवाल पे बहुत सारे लिखें हुए हैं पेंटिंग ये सब किए हुए हैं।

ये कोई होटल जैसा लग रहा है बाहर में एक गेट है गेट के ऊपर में लिखा है सागर रेस्टोरेंट .

और लकड़ी का सेंट्ररिंग किया गया है।

और यहाँ बहुत सारे ऊपर में पत्थर भी हैं।

सामने बहुत सारे लोग जो है भीड़ लगा के रखे हुए हैं।

और यहाँ से सामने से एक रोड पास हुआ है और आगे में बाउंड्री किया हुआ कुछ दिख रहा है जहाँ बहुत सारे लोहे ये सब गड़े हुए हैं ।

इसमें बहुत सारे लोहे रखे हुए हैं।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

सामने बड़ा सा बिल्डिंग दिख रहा है।

सामने एक बड़ा-सा गेट भी है और काला कलर से पेंटेड है अन्दर में।

पेड़-पौधे हैं हरे-हरे और के ऊपर आसमान है ब्लू कलर में दिख रहा है।

मैट ले कर के और सब लोग कसरत किये जा रहे हैं और निचे बहुत सारा घांस जमा हुआ है।

जो की सीमेंट सा बना हुआ है और उसको पेंट किया हुआ है ऑरेंज कलर पिंक कलर से और नीचे में कुछ लिखा हुआ है।

घांस जैसा फ फूल बनाया है पत्थर भी बनाया हुआ है पहाड़ ये सब है।

पिंक कलर का है वाइट कलर का है बहुत सारे विंडो भी लगे हुए हैं।

और सामने बड़ा सा एक गेट नजर आ रहा है कार में जो है ये पूरा खुला हुआ है पूरा कूलिंग दिख रहा है।